अ यह एक पोल दिख रही है वहा भी अलग अलग --

वो गार्डन मे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे दिख रहे है और फ्लावर्स भी है और ऊपर आसमान दिख रहा है।

यह ट्रेन इ इंडिया रेट करके नाम है वह ट्रेन की और आजूबाजू वो --

गेट और उसके आगे एक बडीसी बिल्डिंग दिख रही है।

हे और दो शॉप बंद है एक शॉप चालू है ईस कोटक महिंद्रा बैंक है और कुछ पोस्टर्स है कुछ गाड़िया रखे है।

हरे भरे झाड पौधे है और बड़े बड़े खंबे दिख रहे है और आसमान भी दिख रहा है।

हरे भरे झाड घास है और बहुत बड़ा तलाव दिख रहा है और उपर आसमान दिख रहा है।

यह एक मैदान मे बहुत से लोग दिख रहे है उनके गाड़ी देखे के और बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

यहा एक तलाव दिख रहा है तलाव मे दो बोट है एक बोट मे बहुत आदमी--

और आसमान दिख रहा है।

और खराब वन साइड टाक रहे है और उसके बाजू मे एक करेट दिख रहा है।

नीचे फथर दिख रहे है और उपर मे एक बास दिख रहा है।

यहां चर्च और वहां येशु येशु करी--